नमस्ते यहां देखा जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत पोटरी वाल बनाई गई है जो कि पत्थरों से बनवाई गई --

यहां पर देखा जा रहा है कि एक मंगला है जिसमें इन और आउट का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जहां पे बाहर गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन बहार गाड़ी --

जहां ब्राह्मण लोग रहते हैं उसके बाहर पेड़ भी लगाए गए हैं पेड़ों की पेड़ों की घनी छाए हैं दीवार का कलर भी बहुत अच्छा है।

लेकिन इस इसके ऊपर कोई नहीं किया गया। आ वहां के लिए वेंटिलेशन भी नही की--